बिजली का तार निकला हुआ है ऊपर से।

एपेक्स वाला रोड डला हुआ है।

दो व्यक्ति नीचे बैठे हुए हैं दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

बगल में एक और मंदिर है जिसपे शटरिंग लगी हुई है।

कुछ लोग लाइन में खड़े हुए हैं।

सामने एक मस्जिद दिख रही है जोकि वाइट कलर की है।

व्हाइट कलर के तकिये रखे हुए है।

लाल कलर की एक साथ कई सारी कुर्सियाँ रखी है।

एक व्यक्ति जोकि नीली टी-शर्ट पहने हुए है हाँथ में ऐयर मशीन --

जिसपर एक गमला भी रखा हुआ है पेड़ का डस्टबीन दिख रही हैं।

यहाँ कोई फसल लगी हुई है।

कुछ दहताबेज भी दिख रहे हैं।

एक टेम्पू खड़ी हुई है मोटर साइकिल खड़ी है कुछ लोग खड़े भी हैं।

एक मैम खड़ी हुई हैं जो की सफ़ेद ड्रेस में हैं।